खरीदने के बावजूद यहाँ से कम वैसी भी करवा लेते है। कम बैसी हो जाता है।

ये नदी का सुराही बनाया गया है।

मेडिसिन काफी सारे मेडिसिन मिलते हैं जाके लीजियेगा।

पार्क है। पार्क है। पार्क में सब कोई आता है भाई --